मेहली पार्क के नाँव में चहि के कड़ी देख बा तो पूरे एक नंबर दिखत है पूरे पटरा वटरा पूरा लगा लेक--